यह संगीन इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसका नाम है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है अह मतलब यह दूकान के अन्दर।

कुछ लोग बहुत सारे जण दिखाई दे रहे है अ पीछे लाइटिंग भी है लाइट का खम्बा है उसके पीछे ग्रीनरी दिखाई दे रही है और एक एक लड़कियाँ आदमी की परछाई दिखाई दे --

छट पूजा है यह शायद पीछे ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है अह --

झाड़ भी दिखाई दे रहे है।